अ कुरकुरे की पैकेट्स लटकी हुई हैं।

खिरकी दिखाई दे रही है बगल में अलमाड़ी औड़ सामने एक औड़ खिरकी दिख रही है।

कुर्सियों के वहां देर और छज्जे पर परदे लगे हुए हैं कुछ रेक्स हैं।

अंदर पंखा लगा हुआ दिख रहा है समान दुकान में भरी हुई--

टी_वी का शोरूम प्रतीत होता है।

फोन बहोत ही अच्छे अच्छे यहां पे मॉडल्स हैं।

दो चार व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि जिम में एक्सरसाइज करने के लिए--

और यह थाना लग रहा है कोई सरकारी कार्यालय भी हो सकता है।

अ ये बोहोत ही सुंदर है बाहर से दिखने में बोहोत ही अच्छा है और लग्जेरियस लग रहे --

और यहां पे एक फ्लावर्स के हैं बगल में एक--

सरक के उस तरफ एक ऑटो रिक्शा जाती हुई दिखाई दे रही है और किनारे पर--

पुल है यहां पे कुछ व्यक्तिगन खड़े हैं।

सामने ही दो बोरियां खोल कर रखी गई हैं।

बोए हुए हैं गमले में फूल लगाए गए हैं।

बच्चे बसों में चर रहे है अपने घर को जाने के लिए।

स्वागतम लिखा गया हैं नीचे जाने के लिए--

यह काफी ऊंची बिल्डिंग के नीचे यह बैंक है और बाहर बहुत सारे बाइक भी लगे हुए हैं हमें कुछ व्यक्ति भी दिखाई देते हुए--

ग्रिल है लोहे की और अंदर की तरफ बहोत से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं अपने कार्य को करते हुए प्रतीत हो रहे हैं।

दुड एक पोस्टर भी लगाया गया है।